एक औरत टू व्हीलर का सहारा लेकर बैठी हुई है और मोबाइल चला रही है।

साइड में बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई है।

कमरे में बैठने के लिए सोफे रखे हैं।

यह शेयर वुड कैंपस का भारी हिस्सा है।

बाहरी हिस्से की तरफ वृक्ष भी लगा हुआ है।

यहां पर एक व्यक्ति चेकदार शर्ट पेहने खड़ा है।

यहां पर तरह तरह के गुलदानों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल रखे हैं।

उत्सव में दाहिनी तरफ एक बिल्डिंग पर कुछ लोग इकट्ठा दिखाई पड़ रहे हैं।

टी_वी के ऊपर सेट ऑफ बाॅक्स रखा हुआ है।

कमरे में गद्दे के ऊपर एक सुंदर पर्पल और व्हाइट कलर की बेडशीट बिछी है।

राइट हैंड साइड में कुछ बेलदार पौधे लटकते हुए गमलों में रखे नजर आते हैं।

मंदिर के ऊपरी हिस्से में दो लाइटें जलती हुई दिखाई पड़ रही हैं।

ऑफिस में लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई हैं।

ट्रक के दाएं साइड में ही एक बिल्डिंग भी है।

यह एक फूल मार्केट है।

कार्यालय मंडलायुक्त के खंभे पीले कलर के हैं।

यहां साइड में ए_सी लगा हुआ है।

बिल्डिंग के राइट हैंड साइड में संगमरमर पर कुछ लिखा हुआ है।

पुस्तकालय में मेज और कुर्सी रखी हुई है।